हमे बल्प भी दिख रहे है। हमे बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे है। हमे यहा पर दो बसेस दिख रही है। एक रेड कलर की एक व्हाइट कलर की दिख रही है। हमे यहा पर रोड भी दिख रहा है।

हमे यहा पर बहुत सारी कार दिखाई दे रही है। बहुत सारी स्कूटी हमे दिखाई दे रही है। बहुत सारी हमे बाइक दिखाई दे रही है। जो की काले कलर रेड कलर की है। हमे यहा पर रुड लोग भी दिखाई दे रही है। पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है। नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

हमे यहा पर बहुत बड़ा मंदिर दिख रहा है हमे ये मंदिर पीले रंग का और सफ़ेद रंग का दिख रहा है हमे यहा पर बहुत बड़ी खिड्किया दिख रही है हमे यहा पर एक लोहे की भगोनी दिख रही है हमे रेत दिख रही है।

हमे यहा पर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है हमे यहा पर नीला आसमान दिखाई दे र--

पोस्टर हमे यहा पर दिखाई दे रहा है नीला आसमान हमे दिखाई दे लायटिंग की खंबे दिखाई दे रहे है हमे बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

हमे यहा पे एक बहुत बड़ी फ़ैक्टरि दिख रही है हमे दो पाइपस भी दिख रहे है बहुत सारे टंक्स भी दिख रहे है हमे सीमेंट के हमे यहा पर लोग भी दिख रहे है।